यहां काउंटर पे एक व्यक्ति बोल बम का कपड़ा पहन के खड़ा है।

बगल में एयरटेल का स्टाफ है यहां पे एक मीटर लगाया गया है।

एक मंदिर है मंदिर के बगल में बहुत सारे ध्वज लहरा रहे हैं।

मानसरोवर स्टेशनरी का दुकान है।

यहां पे पोस्टर में लिखा गया है। हमारे यहां सभी प्रकार के कॉपी पेन पोलेसील रबड़ कंपास एवं अन्य प्रकार के स्टेशनरी सामान उचित मूल्य मे उपलब्ध है।

जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं।

इनमें से बहुत सारे टमाटर पके हुए है पुरी तरह से इसमें से बहुत सारे टमाटर पके हुआ नहीं हैं।

कटहल के बड़े बड़े पौधे हैं।

आई थर्टी वन वीवो का सेट है।

यहां पर बहुत सारे किताब फ़ोटो कॉपी का पेपर है बगल में एक व्यक्ति बैठे हुए है किताब के ऊपर में एक कैलकुलेटर हैं।

यहां पे बहुत बड़ा ट्यूबलाइट लगाया गया है।

एक स्वास्तिक ब्यूटी क्यूक है जहां पे अंदर में गड्ढा लगाया गया है।

दिवाल में हरा रंग से कलर किया गया है एवं येलो कलर से --

बगल में एक बहुत बड़ा पानी का टंकी है।

बगल मे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

नदी के इस पार चार व्यक्ति खड़ा है।

बगल में कई सारे बच्चे खड़े हैं बहुत सारे बच्चे बैठ के खेल रहे है।

यह एक जिम का दृश्य है।

इसका गेट का रंग रेड कलर का है।

ये एक राशन दुकान का दृश्य है।

मूर्ति के बगल में ऑरेंज कलर से घेरा गया है।

बगल में बहुत सारे किताबें रखे गए हैं।

सैलून बहुत अच्छा से सजावट किया गया है।

टाउन के पीछे बहुत बड़े-बड़े पेड़ पौधे हैं।